और ये कहाँ पे है ये स्कूल और क्या नाम है।

अपनी फोटो क्लिक कर रहा है और देखो यहाँ पर जिम की बहोत सारी मशीनें रखी --

और यहाँ पर कोई शादी है या फिर कोई छोटा-मोटा फंक्शन है।

श्री राम और माता सीता की तस्वीर है और ये देखो बड़ी-बड़ी --

खली पड़ा मैदान कहाँ पर स्थित है।

तो ये पहाड़ी कहाँ पर स्थित--

पता ना कौन है क्या नाम है।

ली गई है और ये एक लकड़ी का सोफा कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है इस पर कुछ डिजाइन भी बना हुआ है।

ये एक बहोत बड़ी और ऊंची इमारत बनी हुई है ये कोई होटल जैसा लग रहा है नीचे --

ये कोई मच्छी बाजार लग रहा है यहां पर देखिए एक महिला बैठकर --

कौन-कौन सी मच्छी है ये अलग-अलग किस्म की हैं।